यहाँ पे बहुत सारे स्वेटर मिल रहे हैं और बहुत सारे अलग-अलग कपड़े भी मिल र --

और यहां पे फोन भी रखा हुआ है जो काले रंग का है।

इसी में लगे हुए हैं यहां पे अं मुर्गियां है रेड कलर की।

जो लाल रंग के हैं यहां पे बहोत सारे खिड़कियां और दरवाजे भी है।

ये एक शॉप है और यहां पे बहोत सारे--

खिड़कियों में शीशा लगा हुआ है और एक पेरू है जो हरे रंग का--

बहुत सारी खिड़कियां भी लगी हुई हैं और यहां पे सभी खिड़कियां नीले रंग की हैं।

यहां पे तीन गिटार है एक येलो कलर का है ब्लू कलर का एक रेड कलर का है।

कुछ बिछाया हुआ है ब्राउन कलर का और यहां पे एक इंसान है जिसने बिल्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है।

और यहां पे मौसमी पेड़ भी लगा हुआ है जो हरे हरे--